ऊपर तक हमें बिल्डिंग बड़ी सी बड़ी नजर आ रही है।

एक बड़ा सा बोर्ड भी हमें दिखाई दे रहा है लगा हुआ है।

ऑफिस का भी एक हमें बोर्ड लटका हुआ नजर आ रहा है।

हमें दिखाई दे रही रेलिंग लगी हुई है और वहां नाम लिखा हुआ है दया श्री भवन--